बीच में एक लड़का व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए झंडा लेके खड़ा है।

ये एक आदमी दिख रहा है पास में दो तीन बेंचे पड़ी हुई है काफी दूरी पे बहोत सारे जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं दो मोटरसाइकिल दूर दिखाई पड़ रही है कुछ डस्टबिन दिखाई पड़ रहे है।

वो एक आदमी फोटो खींचता हुआ दिखाई पड़ रहा जिसने पगड़ी बांध रखी है।

बहुत सारे वायर दिखाएं पड़ रहे कुछ लाइटे लगी हुई है।

बहुत सारे खंभे दिखाई पड़ रहे हैं कुछ वायर दिखाई पड़ रहे है बीच में डिवाइडर है।

एक गेट पास में भी दिखाई पड़ रहा है बहोत सारे पोस्टर दीवाल पे लगे हुए हैं।

एक आदमी बैग टागे हुए आ रहा है एक बुढ़ी औरत जाती हुई दिख रही है।

और काफी सारे जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं रोड दिखाई पड़ रही है।

यह घर का काफी सारा सामान रखा हुआ है कुछ गद्दे रखे हुए हैं।